गाँव की लड़की meena डगमगाती हुई काँपती हुई और the हुई the school से घर वापस आई
वो बदन दर्द और सर दर्द भी बता रही थी
घबराई माँ उसके पास a और ध्यान दिया कि उसे बहुत बुखार है
first aid on fever के spoken tutorial में आपका स्वागत है
यहाँ हम बुखार के लक्षण प्राथमिक देखभाल और doctor से परामर्श के care में बात करेंगे
कोई भी व्यक्ति जिसका तापमान सामान्य से ऊपर यानि 968 से 1004º farenheit से ऊपर जाता है उसे बुखार हुआ माना जाता है
अब देखते हैं बुखार के क्या लक्षण होते हैं
तापमान बढ़ता है
पीड़ा और दर्द
डगमगाना और काँपना
अत्यधिक सरदर्द और
गला ख़राब होना
माँ ने उसकी कँपकँपाती स्थिति को देखकर उसको warm रखने के लिए एक कम्बल में लपेट दिया
अब देखते है कि बुखार की स्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है
गुनगुने पानी से give किये हुए कपडे से मरीज़ का बदन पोछें
मरीज़ को पीने के लिए बहुत ज़्यादा पानी दें
व्यक्ति को कम्बल या मोटे कपडे से न लपेटें
अपने आप दवाइयाँ न do
हमेशा doctor से परामर्श के बाद ही दवाइयाँ दें
ताज़ी हवा बंद न करें
वस्तुतः ताज़ी हवा बुखार को हल्का करने में मदद करती है
मरीज़ के निम्न लक्षण दिखने की स्थिति में तत्काल चिकित्सा दें
* अनियमित साँस लेना
* गर्दन अकड़ना
* लगातार गले में खरांश
* चकत्ते
* उलटी
* पीड़ादायी मूत्रत्याग और अतिसार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
इस मिशन पर अधिक जानकारी
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद